यह कहीं के ग्राउंड का फोटो है बहुत बेहतरीन है जमीन दिख रही है आसमान दिख रहा है बहुत ही अच्छा है बहुत ही बेहतरन--